कुछ आगे है कुछ पीछे है।

ये एक मॉल है यहां पे मॉल में सारा सामान है।

ये एक रास्ता है रास्ता में यहां पोस्टर बना हुआ है।

अह यहां पे रंग बिरंगा चेयर भी रखा हुआ है।

ये तो मेरा फेवरेट प्ले ये तो मेरा फेवरेट प्लेस है यहां पे हमें नदी दिख रही है।

यहां पे हम में वॉक कर सकते है यहां पे मतलब ये बहोत ही--

कुछ ऑटो में आदमी बैठने जा रहे हैं और कुछ ऑटो खाली है खड़ी है अभी और अगल बगल बहोत सारे एरिया है हमें--

बैग रखा हुआ है बुद्ध का फोटो लगा हुआ है पहाड़ का ही फोटो लगा हुआ है यहां पे हमें --

यहां पे हमें कुर्सी चेयर बाइक ये सब दिख रहे हैं।